स्क्रीन दिखाई दे रही है। बोहोत बड़ी जिसमे लड़का लड़की बने हुए हैं और लड़के ने सफ़ेद शर्ट ब्लू पेंट पहना है और लड़की ने लाल कलर की साड़ी पहनी है।

टोकरी रखी है और गोल शेप में कुछ रखा हुआ है। पीछे कुछ कुर्सी दिखाई दे रही है। बाउंड्री दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की। एक छोटी सी लड़की भी दिखाई दे रही है।

की अलमारी दिखाई दे रही है। कुछ टब भी दिखाई दे रहे हैं गुलाबी और नारंगी।

जिसपे बहोत सारा पानी भी भरा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनकी पत्तियां गोल-गोल दिखाई दे रही हैं नदी के अंदर लगे हुए हैं। पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दूर --

यह एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है रोड दिखाई दे रही रोड के बाजु से एक बाउंड्री दिखाई दे रही छोटी सी जो कि छड़ो से तारो से बनी हुई है।

एक टोकरी दिखाई दे रही है बाजू में लाल कलर की। कप और पेपर दिखाई दे रहे हैं।

यहा एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि लाल कलर की है और सफेद कलर की है| हरे कलर की ऊपर से दिखाई दे रही है ।

एक बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही जहाँ कुछ मशीने दिखाई दे रहे है और खंभे दिखाई दे रहे है।

अंदर कुछ मूर्ति जैसे भी दिखाई दे रहा है। कुछ गुलदान भी दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम दिखाई दे रहा है जहा बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है| ब्लॉउस दिखाई दे रहे है।

कुछ ऊपर लाइट भी दिखाई दे रही है| ऊपर सीलिंग पे नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

एक स्टेज बना हुआ है| कुछ कुर्सिया बनी है| स्टेज सफेद ऑर लाल कलर कि परदे से बना है।

एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि खुला हुआ है अंदर एक प्रतिमा बनी है।

जिसमें बंदूक लिए हुए है। ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जिसने एक लड़की है जिसने सूट पहना हुआ है नीचे घागरा पहना हुआ है।

जो कि घोडा की है और ऊपर रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है तलवार लिए है।